कुछ व्यक्ति भी इसमें शामिल है जोकि डांस कर रहे--

तस्वीर में लाल कार्पेट बिछा हुआ है और कुछ सुंदर पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं और लाइट भी --

वो दिखाई पड़ रही है और एक लेटकर करने वाली मशीन भी हमे दिखाई पड़ रही है ।

यह एक हरा भरा खुला मैदान हमे दिखाई दे रहा है। जिसके ऊपर से काफी--

तारे जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमे एक खंभा भी लगा हुआ है और खेलने के लिए एक जाल भी लगा हुआ --

यह एक खुला मैदान हमें दिखाई पड़ रहा है जिसमें काफी दूर-दूर तक हरियाली दिख रही है।